ऊपर एक भारत का झंडा भी लगा हुआ है यह बिल्डिंग दो ही दो मंजिला है।

यह फोटो किसी धर्मशाला की दिखाई दे रही है यहां पर ये दो या तीन मंजिला --

और इन टायरों की बो लीए एक बोल्ट भी लगा हुआ है जिस पर के टा--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

और एक स्टोर पे लिखा है सैमसंग और दूसरे पे लिखा है सोनी और कुछ पोस्टर लगे है जिनमें मोबाइल और लैपटॉप का चित्रण किया गया है।

और यहां पर कोई पेपर का सेंटर आया हुआ है बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और बाहर एक पोस्टर पर कुछ पर्चे लगाए गए हैं और बच्चे लिस्ट देख रहे हैं।

पास मे एक खिड़की भी है जो स्टील की बनी हुई है सामने एक घर भी बना हुआ है जिसके ऊपर सौर प्लेट लगी हुई है।

अंदर बहुत सारा बड़ा एक पारक भी बना हुआ है और बहुत बड़े बिल्डिंग भी बनी हुई है।

यह फोटो किसी होटल की है जहां पर टेबलें रखी हुई है टेबलों के ऊपर --

यह फोटो कोई सरकारी विभाग की है और यहां पर बहुत सारे टॉयलेट बने हुए हैं एंड उसके ऊपर काली टंकियां रखी हुई है।

एक बार भी बना व्यापार के पीछे पानी के स्टोर के लिए के वाटर बॉक्स बनाया हुआ है एक बिल्डिंग बनी हुई है।

जोकि पुराना दिख रहा है ये दो मंजिला दुकान है नीचे दुकान का गेट है शीशे से बना हुआ है पास में भी --

कुछ स्टील की रेलिंग भी लगी हुई है सामने एक सफेद बिल्डिंग दीवार पे इस चित्रण किया गया है।

जहां प्रकार ये चल रहा है और एक नीचे बाइक खड़ी है और यहां पर काउथ़ लगने का कार्य चालू है।

यहां पर एक बहुत बड़ी रोड ले है बहुत कुछ बाईकें खड़ी है पास में एक दुकान भी है और बहुत सारे पेड़ पौ--

और चारों तरफ बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे भी बनी हुई है एक लाइट भी लगी हुई है अंदर एक ये पिच भी बनाया गया है।